यह एक पार्क है जहा पर की बच्चे लोग खेलने के लिए आते हैं। छोटे-छोटे बच्चो के लिए यहाँ पर फिसलपट्टी और दुसरे तरह की फिसलपट्टी भी है।

जिसमें की बच्चे चढ़ कर के दूसरी और से बाहर आते है और इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। एक साथ दोस्तों के साथ तो और ज्यादा मजा आता है।

यह छठ पूजा का दृश्य है जहां पर बिहार के लोग छठ पूजा को बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं। इसमें --

यह एक मंदिर की फ़ो टो है जहां पर के पीछे एक मंदिर है और ये लोग नीचे उतर रहे हैं।

इसलिए यह लोग सारे एक साथ फोटो खिंचवा रहे हैं सामने बाइक भी है।

दो दो के ग्रुप में बंटे हुए हैं और गोंद वगैरा सब चीज़ वहाँ पर रखी हुई है जिससे उन्होंने यह सब बनाया है।